ये बस ए.सी. स्लीपर कोच है जो नाईट मे निकलती है इसके बगल मे कुछ टेम्पो भी दिख रे है जिसमे यात्रीगण उतरते हुए दिख रहे है।

ये एक लॉन्ड्री लैब सीन है जिसके बाहर एक पोस्टर टंगा हुआ है।

एक मैदान का जगह दिख रहा हैं। जो चारो ओर खेत हैं। इन खेतो के बीच में एक जगह पानी काफी भरा हुआ हैं।

एक सनसेट का सीन है जो एक नदी के किनारे से लिया वा गया है इस नदी में अ सनसेट की परछाई काफी सुंदर पड़ रही है।

यह एक शोकैस मे बोहोत सारे गुड्डे दिख रहे है जो विभिन्न कलर रंगों मे बने हुए है इनके पास संगीत के नए-नए यंत्र है।

ढोलक हारमोनियम गिटार माजे आदि रखे हुए हैं।